एक सकूटरी भी यहां पे खड़ी है और बहोत बड़ा बोरड बोर्ड भी लग रहा है और--

और यहां बहोत सुंदर सुंदर समाने भी रखे हुए हैं।

और बहोत बड़ी दुकान नजर आ रही है।

और कुछ आदमी इसके अंदर बैठे हैं।

यह एक होटल नजर आ रहा है।

सब बच्चे मेज मेज पे बैठे हैं कुर्सियों पे बैठे हैं।

और बड़े बड़े आदमी बच्चे हैं छोटे नहीं बड़े बड़े कॉलेज लग रहा है बहोत सुंदर दिखाई दे रहे--

यह बहुत सुंदर इसके अंदर तस्वीर बैठी है।

यहां बहोत बड़ी फ्लैट भी चची हुई है।

क्या यहां सब औरतें और आदमी खड़े--